दो पेड़ नजर आ रहे हैं झाड़ी जैसे।

एक डाल जैसा बना हुआ है रेड कलर का है बाहर में केला का पत्ता का काछ लगा हुआ है।

ऊपर शीशा लगा हुआ है पीछे कुछ पोस्टर लगा रहा है।

ये एक ज्वेलरी का दुकान है अंदर में कुर्सी दिख रहा है पंखा दिख रहा है।

बांस का पत्ता दिख रहा है।

ऊपर करकट लगा हुआ है एक बल्ब नजर आ रहा है।

इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है बाबा चूड़ी का स्टोर है।

बहोत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है जिससे बहुत सारे पानी गिर रहे हैं।

बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है यहां कोई जंगल है जिसके बीचो बीच पहाड़ है।

बगल में लाल कलर का चप्पल रखा हुआ है।

एक आदमी सीढ़ी पे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

बाहर में बाइक और साइकल नजर आ रहे हैं एक ठेला दिख रहा है।

इत्यादि बल्ब वगैरा बहोत सारे सामान नजर आ रहे है।